संतरे रखे हैं अनार रखे हैं यहां पर रेड और ब्‍लू कलर की कुछ बासकेट रखी हुई है यहां पर एक--

यहां पर एक योगा क्‍लास चल रही है यहां पर काफी सारे लोग योगा कर रहे हैं।

एक लड़के ने ब्‍लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है और एक लड़के ने ब्‍लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है ।

हरी मिरच रखी है भिंडी रखी है प्‍याज रखी हुई है ।

यहाँ पर एक लड़का खड़ा है जिसने वाइट कलर की शर्ट पेहन राखी है यहाँ पर एक लड़का खड़ा है जिसने ब्लू कलर की टी_शर्ट पेहन राखी है।

यहां पर एक लड़का योगा कर रहा है जिसने ब्‍हाईट कलर की टी शर्ट पहन रक्‍खी है।

यहां पर कुछ पिंक कलर के फूल खिले है कुछ ब्‍हाईट कलर के फूल खिले है कुछ डार्क एलो कलर के फूल है कुछ लाइट एलो कलर के फूल है।

यहां पर अनार रखे हुए हैं संतरे रखे हुए हैं सेब रक्‍खे हुए हैं ।

यहां पर एक टेरिस है जिस पर तीन टंकियां रखी हुई है एक वाइट कलर की दो ब्लैक कलर की।

यहां पर एक जिम सेंटर है यहां पर एक लड़का एक्‍सरसाइज कर रहा है जिसने--

इसने ब्‍लेक कलर की टी_शर्ट पहन रखी है वहां पर एक सी ग्रेट कलर की एक बॉटल रखी हुई हे एक ब्‍हाईट कलर की बॉटल रखी हुई है।